यह एक चौराहे का चित्र है जिसके आसपास कई सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

जिसमें एक वातानुकूलक लगाया गया है।

इसके दीवारों को कांच से सजाया गया है तथा इसके दरवाजे को कांच से बनाया गया है।

तथा इसके अंदर आइसक्रीम के डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

इस चिकित्सालय के दीवारो को हल्के सुनहरे रंग से रंगा गया है।

इस शॉपिंग मॉल के दीवार को काले तथा भूरे रंग से रंगा गया है।

एवं इसके ऊपर एक प्लास्टिक बोतल भी रखा हुआ है।

यह एक सब्जी मंडी का चित्र है जिसमें करेला तुरई तथा शिमला मिर्च दिखाई दे रहा है।

यह एक पर्वतीय जंगल का चित्र है जिसमें कई सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

तथा एक व्यक्ति के हाथ दिखाई दे रहे हैं।

इस पर्वत पर पीले रंग के छोटे छोटे घांस भी उगे हुए हैं।

इस उद्यान के आस पास दो मकान भी दिखाई दे रहा है।

यह एक समुद्री तट का चित्र है।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

जिसकी फर्श और दीवारें हल्की सुनहरी रंग की है।